सामने एक चौकोन बनाया हुआ है। चौकोन के ऊपर एक पित पुतला रखा हुआ है। पुतले कुत कांच की --

उसके ऊपर एक आ हरे रंग के छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे है ऊपर आ नीला और --

सामने एक कॉलेज का गेट दिख रहा है उसके अंदर बड़ी सी एक एक बिल्डिंग है उसके --

सामने गेट के ऊपर कॉलेज का एस.टी.जे. एस समथिंग कॉलेज का नाम लिखा है।

लकड़ी का स्टेज बनाया हुआ है इसके पीछे के साइड मे।

सामने एक बहुत बड़ा रूम दिख रहा है रूम के अंदर बहुत सारे --

अलग अलग प्रकार की मशीने रखी हुई है। सामने उसके इंटेंस जीडी दिखाई दे रहा है।